यह एक घर की तस्वीर है। जिसके ऊपरी दिवार पर पिले रंग की हुई है। उसके निचे लाल रंग की हुई है।

सामने कुछ बेंच है बेंच के ऊपर बैग्स रखे हैं और सामने एक कबर्ड भी है।

इसका प्राइस सेवेन हंड्रेड से वन थाउजेंड के बिच में हैं। कुछ लोग खरीद रहैं हैं और कुछ लोग खड़े हैं।

सामने एक पीले कलर का बिल्डिंग दिख रहा है। जिसके सामने ग्रिल लगा हुआ है। साइड मे रास्ता भी है और उसके ऊपर कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं।

तस्वीर में सामने एक ब्लू कलर की बच्चे की गाड़ी रखी है उसके पीछे दो एस्किलटर जा रही है उसके बीच में एस.बी.आई. कार्ड लिखा है।

साइड में एक बाल्टी है जो की ब्लू कलर की है सामने एक वॉल है जिसमे टाइल्स लगी हुई हुई है और साइड में कुछ डिब्बे भी रखे है।